ये डेजर्ट की तस्वीर है जिसके अंदर केक गुलाब जामुन पड़े हुए है पेस्ट्रीज़ --

नीचे ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है बहुत सारी धूल मिट्टी भी पड़ी हुई है।

ज्यादा तरह ऑटो रिक्शे खड़े हुए एक आदमी मुंह में लकड़ी लेकर।

एक कुत्ता खड़ा हुआ है और ऊपर सीढ़ियां चढ़के सामने घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में तीर कमान है।

और लोगों को इनफार्मेशन दे रहा है मोबाइल के अबाउट एक ।

यह एक इंडियन मार्केट की तस्वीर है जिसके अंदर सामने ।

आयल चेंज किया जाता है यहां पर एक साइड पर गर्मी में बचने के लिए।

मुख्तलिफ कलर की कैप्स लग रही है जिसके अंदर रेड ब्लैक येलो व्हाइट ग्रे ।

यह मार्केट की तस्वीर है जिसके अंदर एक ब्रांडेड की दुकान है।

और कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं ऊपर असमान में चील कौवे और दूसरे परिंदे उड़ रहे हैं लोगो।

ब्लैक कलर की पेंट में खड़ा हुआ एक ने ग्रीन शर्ट और वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई है।

ये कंस्ट्रक्शन साइड की तस्वीर है जिसके बाहर--

हाइट के ऊपर बड़े-बड़े स्पीकर लगे हुए है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।